यहां व्हाइट कलर का कितना अच्छा है और अंदर भी घुसा हुआ है और यहां पर अच्छा है अच्छा है अच्छा है।

अच्छा लग रहा है वाइट कलर का अच्छा लग रहा है।

यहाँ पे लिखा है एक

और बहुत बढ़िया लग रहा दिखने में इधर पकड़ा हुआ है और ये भी बहुत बढ़िया दिखाई देते हुए बहुत अच्छा ये लग रहा है और बहुत मस्त ये दिखाई देता है।

बूढ़ा सा है ये दुकान में घुसा हुआ है ये देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत उमर दिखाई दे रहा है और ये टोपी भी लगाई हुई है और बहुत बढ़िया है दिखने में।